और दोनों तरफ गेट के दोनों तरफ बाहर मे गे--बोर्ड लगा है जो कि देखने मे बहुत अच्छा लगता है आम का पेड़ भी दिखाई दे रहा है ऊपर से बिजली का तार भी दिखाई दे--बहुत अच्छा लगता है।

एक बिल्डिंग पे उसपे सोलर प्लेट भी लगा हुआ है। और सामने एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है। साथ में एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है जो कि देखने में बहुत हरियाली लगता--

उसे तरफ बहुत दूर तक बाउंड्री भी दिखाई दे रहा है इसका छजिया भी दिखाई दे रहा है जो की बहुत हरा भरा लगता है और देखने में स्कूल --

यह जगह भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। माता रानी का कोई फोटो लगा हुआ है जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। सामने घड़ी भी दिखाई दे रहा है।

ये जगह भी बहुत खबसूरत लगता है रोड भी लग रहा हैं जैसे बना हुआ हैं। ऊपर पानी दिखाई दे रहा हैं और--

ये जगह भी बहुत खबसूरत लगता हैं जहाँ पे बहुत सा चित्र बना हुआ हैं जो कि देखने में बहुत लाजवाब लगता हैं एक--

साइड में भी दिखाई दे रहा है और इसके नीचे कुछ बोर्ड लगा हुआ है जो दिखाई नहीं देता है जो कि देखने में बहुत खबसूरत लग--

गिरा हुआ पानी की तरह रहता हैं और देखने में बहुत अच्छा लगता हैं पानी में पुल का पाया देखने में बहुत अच्छा लग रहा हैं।

ये बहुत खबसूरत जगह लगता है देखने में जो कि ये बहु- एक बड़ा गेट भी बना हुआ है जो स्मारक का सीन भी बना हुआ है और--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

ये जगह भी बहुत अच्छा लगता है। नाव दिखाई दे रहा है सामने पानी दिखाई दे रहा है।

और सामने एक बिजली कि खंभा दिखाई दे रहा है जो लगता है टावर के जैसा है। बहुत से आदमी इसमे खड़े हैं जो खेल रहा है।

सामने एक खड़ा आदमी दिखाई दे रहा है। देख के बोहत अच्छा लगता है।